यह एक सैलून है जो एक व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और जो --

और जो व्यक्ति नाव में बैठे हैं। वह हाथ में एक डंडा लेकर चला --

और यहाँ जो बिल्डिंग है सफ़ेद कलर की है और जो नीचे है नीचे की भी --

हरा लगाया गया है और यहाँ पर एक पहाड़ भी दिख रहे हैं और --

सब लाल-लाल कलर के धागो पे --

और यहाँ साक हरे-हरे दिख रहे हैं।

सभी टेबल के ऊपर नाम के टैग लगा हुआ है।

और जो बैंक है व्हाइट कलर की कलर किया गया है।

यहा दो चम्मच भी है।

शोरूम लिखा हुआ है।

और यहाँ पर नीचे शेरनी है। शेरनी का एक --

बनाई गई है और यहाँ बिल्डिंग सामने एक छोटा सा गार्डन है।